और काफी ऊंचा पहाड़ है बहुत सारे लोग चढ़ भी चुके हैं और बहुत सारे लोग चढ़ने की कोशिश में हैं।

ये नही रेस्टोरेंट है और ये अगले भाग में अगल बगल में बहुत सारी झाड़िया है सजाई गई है बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है देखने में रेस्टोरेंट का इसके अगल-बगल में पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

बहुत ही अच्छा फोट--

काफी लाइट है बहुत अच्छे से सजाया गया है।